जिस पे लिखा है मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा।

उसके पीछे एक मंदिर है और यहां बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं नीचे छोटा छोटा घास है।

और सारे पेड़ लगे हुए हैं नीचे हरा मैट बिछा हुआ है।

इस जगह पर बहोत सारा खाने पीने का समान रखा हुआ है।

और कुछ फूल के पेड़ हैं कुछ बड़े-बड़े पेड़ हुए हैं।

उस दुकान के अंदर लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां रखी हुई है।

बराबर में एक गेट है एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है सामने एक आदमी है।

उसके पास में सफेद रंग के थमले हैं और उसमें ग्रील लगी हुई है।

पर बहुत सारे आदमी है।

बराबर में एक ड्रम रखा हुआ है।

यह एस_बी_आई स्टेट बैंक है।

ऊपर सफेद रंग की एल_ई_डी लाइट लगी है।

इसमें एक गुलाब का फूल भी उगा हुआ है।

जिसमें बोर्ड लगा हुआ है उस पे बोटैनिशल गार्डन लिखा हुआ है।

ये एक क्रिकेट खेलने का मैदान है।

दो सफेद दो काली और एक थोड़ी चमक रही है।

जो कुछ बैठे हुए हैं कुछ खड़े हुए हैं।

इसके बराबर में एक गाड़ी खड़ी हुई है उसके पीछे बहुत सारी गाड़ी हैं यहां बहुत सारे पेड़ लगे हैं।

उसके सामने यहां बहोत सारी बाइके खड़ी हुई है।

और यहां बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।